खंबा भी नजर आ रहा है जिस पर ट्रांसफार्मर का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर झंडा लगा हुआ है पता है उस पर कई तारे इधर उधर जा रही है बंधी है।

काले रंग के डिजाइन बन रखे हैं तथा द उसके पीछे कई तरह के गुलदस्ते है रख रखे है सफ़ेद कलर के --

होल्डर लगा हुआ है सफेद कलर का नीले रंग की दीवार है तथा एक रैकेट भी दिखाई दे रहा लोहे का सामने चेयर भी है लाल कलर की --

फोटो में देख सकते हैं एक बड़ा हरे अ हरा भरा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के बीचों बीच कुछ व्यक्ति गोले में बैठ रखे हैं।

नीचे बोर्ड भी लगा हुआ है लाल कलर का और तीन शटर दिखाई दे रहे है बिल्डिंग के अगल बगल काफी बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है जो की काफी हरा भरा है।

बिल्डिंग का कलर्स हरे रंग का है तथा कुछ कुछ पीले रंग का है बिल्डिंग के ऊपर भी तंबू बंद रखे हैं उनके उपर लोहे लगे है।

बीच में समारोह हो रहा है कुछ कुछ लोग कुर्सीयो पे बैठे हैं तथा बीच में कुछ लोग खड़े भी हैं।

आसमान में कहीं बादल भी दिख रहे हैं तथा नीचे की साइड एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

उसके पर पंखा लगा हुआ है घड़ी लगी हुई है दीवार पर गुब्बारा भी ला लाल नीले रंग का लगा हुआ है खिड़की पे पर्दा दिख रहा है।

तथा एक आदमी बैठा हुआ है उसके चारों और कई व्यक्ति खड़े हो रखे हैं व्यक्ति के आगे मेज भी हैं।

मंदिर के ऊपर कई सारे झंडे लाल कलर के दिखाई दे रहा है तथा मंदिर के पिलर भी दिखाई दे रहे हैं जो की सफेद रंग के है मंदिर के आगे की ओर --

खेतों के अगल बगल कई भवन छोटे से बड़े दिखाई दे रहे हैं चारों ओर ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा है।

तथा ऊपर खुला आसमान नीचे दिखाई दे रहा है नीले रंग का अगल बगल छप्पर टाइप बना रखे है जिसमें लोग खड़े हो रखे है।

सामने सफेद रंग का भवन भी दिखाई दे रहा है बड़े--